देख सकते है यहाँ पर गणपति बाप्पा की फोटो रखी गयी है। यह गणपति बप्पा की फोटो है जो इसकी पूजा हर रोज की जाती है।